एक व्यक्ति पन्नी से कुछ निकल रहा है और एक व्यक्ति का फेस छुपा है।

बेड है। बेड के ऊपर सफेद कलर की चादर है पड़ी है। दो तकिए हैं एक दो कंबल हैं।

रेस्टोरेंट में लाल कलर की कुर्सियां काले कलर की बेंच दिखाई दे रही है।

ये एक रेस्टोरेंट है इसमें कुछ लोगोंके फेस छुपे हुए हैं।

लोहे की कुर्सियां दिख रही हैं।

यह एक शादी वाला हॉल है इसमें पीले सफेद पर्दे दिख रहे हैं।

और टी_वी लगी है नीचे कंप्यूटर रखा है बेंच पे।

और इसमें पीले कलर की छतरी और एक कुर्सी है।

इसमें कुछ लोगों के फेस छुपे हैं कुछ लोगों के दिख रहे हैं।

इसमें बहुत सारे व्यक्ति कुछ मसाला कुछ खाने पीने का सामान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और--